यह एक हॉस्पिटल है यहाँ पे डॉक्टर विमला साई बैठती है ।

और यहाँ का भाड़ा भी कम है।

यहाँ पे इलेक्ट्रिकस के भी समान मिलते हैं।